यहां पर बहुत लोगों की भीड़ जमी हुई है यहां पर एक आदमी चलकर आ रहा है सामने से जिसने ब्लैक कलर का वाश कोट पहना हुआ है उसने भीतर जो शर्ट पहना हुआ है वो व्हाइट कलर की है उसने एक लोअर पहना हुआ हैं उसने रेड कलर की शूज पहनी हुई हैं।